यह आदमी लोहे की रेलिंग के पास सेल्फी ले रहा है यहाँ पर बहुत सारे ऊंचे-ऊंचे गाछ भी लगे हुए हैं यहाँ से छोटे-छोटे पेड़ भी यहाँ पर घास फूसे भी निकले हुए हैं और यहाँ पर एक घर मकान भी बना है।

स्टेट बैंक ऑफ़ ए_टी_एम है जिसके भीतर दो औरतें गई है स्टेट बैंक के आगे अंधेरा है जैसे कि लाइट जल रहा है स्टेट बैंक के बाहर भी दो लाइट लगाई गई है जो लाइट जल रही है।